एक जिम हॉल दिख रहा है| जिम की कुछ मशीन दिख रही है ऊपर म्यूजिक इंट्रू-इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है एक हेल्थी चार्ट दिख रहा है।

स्विच दिखाई दे रहे है पलिंक दिखाई दे रहा है एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है कीबोर्ड दिखाई दे रहे है।

एक ठेला दिखाई दे रहा है फ्रूट का कुछ टू - व्हीलर दिखाई दे रही है और ओर एक लड़का है लड़का मास्क लगाए हुए है वो दिखाई दे रहा है पीट या घर दिखाई दे रहा है|